और वहां से लोग को अस्पताल से आना जाना कर --

ये पुस्तक की दुकान है उस पस्तक की दुकान में बहुत सारे बुक रखे हुए है पेन पेन्सिल रखे है और ओह दुकानदार --